और मकान पर कुछ मो पेंटिंग लगी हुई है।

इस फोटो में कुछ गेट दिखाई दे रहे हैं।

ओ दुकान के बाहर एक बैनर लगा हुआ है।

इस फोटो में एक मशीन दिखाई दे रही है।

और चारों तरफ घेराई हो रही है और कूड़ा पड़ा हुआ है।

और नीचे कुछ हरी हरी घास भी दिख रही है।

जहां कुछ ऑटो खड़े हुए हैं लाल और ब्लैक रंग के और उनके ऊपर कुछ जाल भी लगा है।

और कुछ युवक भी दिखाई दे रहे हैं और एक कुर्सी भी रखी हुई है।

इस फोटो में एक मैरिज होम दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक सिलेंडर रखा हुआ है।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

और नीचे कुछ मैट भी बिछाई गए हैं।

और पीछे की ओर कुछ गाड़ी भी खड़ी हैं।

इसके ऊपर टीन की चद्दर पड़ी हुई है।

और कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

ये पास एक मकान हैं जिसमें कुछ युवक बैठे हुए हैं।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

इस फोटो में एक मैरिज होम दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।

और एक टेबल भी रखी हुई है और कुछ कुर्सियां भी हैं।

यह एक दुकान है जिसमें अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ--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

जिसमें कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं और कुछ गाड़ी और टेंपो भी खड़े हुए हैं।

एक सौर ऊर्जा लगी हुई है और कुछ लाइटे भी बल रही है।

और काउंटर पर एक तोलिया भी पड़ा हुआ है।

बराबर में एक टोकरी भी प्लास्टिक की टोकरी भी है।

और कुछ प्रेस डब्बों में रखी है।

और कुछ पिलास और पेचकस भी रखे हुए हैं।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

और बाहर एक युवक बैठा हुआ है और एक टेबल भी है लाल रंग--

और कुछ फूल भी लगे हुए हैं और केले और लाल रंग के और कुछ फूल पत्ते पत्ते भी लगे हुए हैं।

इसमें कुछ समान रखा हुआ है क--

और पीछे कुछ सिलेंडर भी दिखाई दे रहे हैं।